और एक लोहे की जैसा की मैं देख पा रही हूँ बाहर बहुत सारे लोग भी खड़े हैं।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे बैम्बूस भी लगाए गए हैं।

यह सब लकड़ी और लोहे के बने हुए हैं जैसे कि मैं देख पा रही हूं सबके कलर ऑलमोस्ट येलो है जैसे कि मैं देख पा रही हूं पीछे ग्रे कलर है।

जो हरे भरे हैं जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पे बहुत सारे खिड़की और दरवाजे भी हैं और सबके पिलर्स भी हैं।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं ये दिन का समय और यहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जैसे ।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं साइड में भी बहोत सारा लोहा और एक बहोत बड़ी सी मशीन रखी हुई है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पे बुलडोजर से कुछ काम चल रहा है।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ इस लम्बे से सड़क पे गाड़ियां भी चल रही हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पे कुछ गाड़ियां भी लगी हुई है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं ये एक बहोत बड़ा सा हॉल है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पे बहोत सारे टेडी बीयर्स रखे हुए हैं।

और जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पे एक बहोत बड़ा सा नदी है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पे बहोत सारे पक्षी भी उड़ रहे हैं जो बहोत सुंदर लग रहे हैं।